इस तस्वीर मे एक जिम दिख रहा है कुछ आएने दिख रहे है कुछ व्यायाम करने के यंत्र दिख रहा है पीली भागनेवाली साइकलें दिख रही है।

इस तस्वीर मे व्यायाम करने का एक यंत्र दिख रहा है तीन यंत्र दिख रहे है काले रंग की पट्टिया है और वो वो भागनेवाला यंत्र है।

इस तस्वीर मे सबसे पिछे लाल परदा दिख रहा है। उपर दो मोर बने हुए है। रंगबीरंगी फूल बने हुए है। नीचे कुछ मूर्तिया बनी हुई है। लाइटे जल रही है। खुर्चिया रखी हुई है। हरे रंग का कार्पेट बिछा हुआ है।